उनमें काफी सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

इसमें काफी सारे पंखों के बॉक्स रखे हुए हैं।

सोने का पानी चढ़ा हुआ है।

कुछ बॉक्स रखे हुए हैं।

यहां पर मुझे काफी सारी चेयर दिखाई दे रही है।

उसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

नीचे लाइट दिखाई दे रही है।

इसमें मुझे बिजली का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक बड़ी सुंदर नर्सरी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे छोटी छोटी मैट बिछी हुई दिखाई दे रही है।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

सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक पंखा दिखाई दे रहा है।

शीशे दिखाई दे रहे हैं। लाइट दिखाई दे रही है।